पीछे बड़े-बड़े पहाड़ व चट्टान हैं। चट्टानों के आगे --

एक लाइन में एक तरह के ढेर सारे घर बने हैं। घरों के पीछे बड़ा सा पहाड़ है। पहाड़ पे बड़ी-बड़ी --

कैनल बैंक का बड़ा सा पोस्टर है। नीचे एक घर में काले रंग का सटर है।

एक बड़ा सा मोट है मोट के बाहर बड़ी सी घड़ी लगी है मोट हरे --

झालरों से सजी धजी है। ऊपर बड़े-बड़े झालर फूल के आकार में लगे हुए हैं।

एक बडा सा मोर्ट है। जहाँ पे बच्चों के खेल-कूद की जगह है।

उसके नीचे ढेर सारी लाल रंग की बसे खड़ी हैं किनारे एक आदमी फोन पे बात कर रहा है।

हैं लकड़ी के दर सामने वाला गेट लोहे का है।

हरी-भरी छोटी-छोटी घासें हैं। सामने बड़ा सा एक फर्राटा है। पीछे हरे-भरे पेड़ पौधे हैं।